जाने के लिए वेट कर रहे है।

बिरियानी का बाउल भी पड़ा है।

कार के पास खड़े हुए हैं।

और संगीत के बहोत से इंस्ट्रूमेंट --